यहां पर आकर शांति मिलती हैं यहां पर सुबह शाम लोग सेर करने आते है।

ये दुर्गा एग्री सीड्स की शॉप है जहां पे हर तरह के पौधों के बीज मिलते हैं।